बहोत सारे फूल रखे हुए है।

वेइंग मशीन दिख रही है।

बहुत सारे विंडोज दिख रहे हैं दरवाजा खुला है।

वॉल क्लॉक लगाया गया है।

चिप्स के पैकेट लटकाए हुए हैं।

साइकल की परछाई दिख रही है।

कुछ लोग आगे खड़े हुए हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

ऊपर एक ट्यूबलाइट जल रहा है।

साइड में ड्रॉवर्स रखे हुए हैं।

ऊपर कांच की खिड़कियां दिख रही है।